ये मारुति सुजुकी बोल के लिखा हुआ है।

और इस शोरूम के बाहर --

बड़ा मैदान दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस चित्र में --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में एक स्विमिंग पूल दिख रहा --

अ कुछ लोग एक सिटी कॅफे बोल के --

नाम के आगे खड़े हुए हैं और यह सारे लोग --

कटिंग कर रहा है एक आदमी बैठा हुआ है चेयर पे।

और बहुत सारी दुकानें खुली भी हैं।

चल के जाने के लिए एक ब्रिज दिख रही है और ब्रिज से उस पार एक बोट है।

और हरे रंग के पेड़ दिख रहे हैं --

शाम के वक्त का चित्र दिख रहा है।

यहाँ पे देर सारे पेड़ --

ये एक जंगल का रास्ता दिख रहा है।

जहां पे एक सामने बोर्ड लिखा हुआ है फॉरेस्ट बोल के।

जल रही है आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं।

और बहुत सारे लोग हैं और ये यहाँ पे एक मंदिर जैसा इस चित्र में दिख रहा है।

जहाँ पर बहुत सारे हरे रंग के झाड़ और पेड़ दिख रहे हैं --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस चित्र में उदय रंग के --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्रमें --

चेयर दिख रहे हैं सोफा दिख रहा है।

अ लोग घूम रहे हैं ऊपर तरह तरह की रंग बिरंगी लाइटिंग्स भी लगी हुई है।

उसमें से एक आदमी ने पीले रंग का कुर्ता पहना है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस चित्र में आसमान दिख रहा है।

और बड़े पेड़ दिख रहे हैं --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस चित्र में यहाँ पे --

जहाँ पे उस दुकान के ऊपर --

बहुत सारे प्राणियां खड़ी हुई है।